जो खड़ा हुआ है बस के आगे निशानी लगी हुई है बस के दो कान दिख रहे है।

पिले नील हरे कलर के दिख रहे है जो --

यहां एक तालाब है जिस में पानी भरा हुआ है कुछ हरे कलर की घासे उगी हुई है कुछ बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रखे है जो काले कलर के धुन्दले दिखाई दे रहे है।

कलर की दिख रही है ऊपर छत पर टिकी हुई है निचे की जमीन थोड़ी हरी --

यहां एक बिल्डिंग दिख रही है जो सफ़ेद कलर की दिख रही उसके आगे बालकनी--

धार दिख रहा है कुछ लाल कुछ नीले कुछ पीले कलर के दिखायी दे रहे हैं।

यहां एक तालाब दिख रहा है जिस में पानी भरा हुआ है पानी नील कलर का दिख रहा है ऊपर बदल है।

एक बिल्डिंग जैसी बनी हुई है और एक मोटरसाइकिल दिख रही है जो काले कलर की --